यहाँ पर एक बहोत बड़ा किराना स्टोर है इस किराने स्टोर पर बहोत सारे चीजें अच्छी तरीके से सजा कर रखी गई हैं।

यहाँ पर लेफ्ट साइड पर एक बहोत ही बड़ा वाइट कलर का घर बनाया गया है इस घर पर दो खिड़कियाँ लगी हुई है जो की ब्लैक कलर की हैं।

सड़ोस लिखा हुआ है इस दुकान के सामने बहोत सारे अलग अलग स्टाइल की --

और इस ब्रिज के ऊपर बहोत सारे वाहन आते-जाते रहते हैं जो की इस पूल के पार पोहोंचाता है।

यहाँ पर एक बहोत बड़ा ग्राउंड है इस ग्राउंड पर हरी कलर की घास जमी हुई है बारिश के कारण यहाँ का मौसम थोड़ा चिपचिपा है।

यहाँ एक कच्ची सड़क जाते हुई दिखाई दे रही है और इस कच्ची सड़क के लेफ्ट और राइट साइड पर --

और ये लोग ब्लू ग्रीन येल्लो कलर की मैट के ऊपर योगा अभ्यास कर रहे है सामने एक आईना लगा हुआ है।

ये बिल्डिंग बहुत पुराने ज़माने में बनाई गई थी इस बिल्डिंग पर पत्थरो से जोड़ाई की गई है ऊपर अ --